सामने की ओर कई सारी कॉपी किताबें कई सारी चीजे रखी हुई दिखाई दे रही इधर लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही निचे की ओर --

कई सारी चीजे लिखी हुई दिखाई दे रही है कई सारी बने हुए दिखाई दे रहे है सामने की ओर बने हैं।

मुझे इस फोटो में सामने को कैसा एक ऊपर के दीवालों के साथ पेंटिंग एंटिंग बनी हुई दिखाई दे--

चाइना गेट लगा हुआ दिख रहा कई सारे इंसान अंदर की ओर जाते दिखाई दे रहे कई सारे इंसान गाड़ी से दिखाई दे रहे --

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक मंजिल का घर बना हुआ दिखाई वाइट कलर से पोता गया है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारी सामने की ओर कई सारी बी_म लगी जिसमें--

ऐसा भी पार्लर के साइड चीजें लगी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे की ओर कई सारे इंसान प्रोग्राम प्रोग्राम देखते हुए दिखाई दे रहे बेचें लगाई गई--

आसमान ऊपर की ओर टीन टीन लगे दिखाई दे रहे साइड एक ब्लैक बोर्ड टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर टंगे--

दिन का समय दिखाई दे रहा है साइड में दीवाल वाइट कलर की पुती दिखाई दे रही है दिखाई दे रही हैं।

तुम्हें कई सारी मशीनों के साथ काम वाम करते हुए दिखाई दे रहे है

मुझे इस फोटो में सामने को कई सारे इंसान आते जाते हुए दिखाई दे रहे है।

सामने काफी सारी चिजे लगी हुई दिखाई दे रही आजू बाजू कई सारी लाइटिंग लगाई गई हैं व्हाइट कलर के लाइटिंग ब्लू कलर के लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही हैं सामने कि ओ --

मुझे इस फोटो में सामने का पेट्रोल पंप दिखाइ पीछे पेट्रोल पंप के पीछे की ओर--